कई प्रकार की लाईट दिख रहीं हैं जलती हुईं। कई सारी चींजें दिख रहीं।

और अंदर भी कई सारी बाईके खड़ी हुई है लाईट जल रही है एसी काफी सजी हुयी है पेड़ है बाजू में --

टी स्टाल चाय की दुकान खुली हुई है।

एक दुकानदार सफ़ेद शर्ट पहने हुए खड़ा है। पंखा लगा हुआ है और कई सारे सामान रक्खे --

ड्रेस पहने हुये है कुन दो तीन है जो अलग अलग

दो तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं और बिल्डिंगे बनी हुई हैं मैदान के पास।

एक मैदान हैंवहा पे मंदिर भव्य मंदिर जेसा बना हुआ दिख रहा है। वाहाँ पे कई सारे व्यक्ति बेठे हुए हैं और लाईट लगी हुई हैं ओर एक तरफ कुर्सियां कई सारी दिख रही हैं और उसके बाहर भी कई सारे लोग खड़े ओर बेठे दिख रहे हैं।

के हैं है और सेट से कई कपड़े नके हुए कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और कुछ कपड़े मानी रखे हुए हैं।